जियोजेब्रा में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के मध्य संबंध पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
हम मानते हैं कि आपको जियोजेब्रा के कार्य का बुनियादी ज्ञान है
तो कृपया आगे बढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन टो जियोजेब्रा ट्यूटोरियल देखें
कृपया ध्यान दें कि इस ट्यूटोगियल को पढ़ाने का मकसद वास्तविक कॅम्पास बॉक्स की जगह लेना नहीं है
जियोजेब्रा में संरचना निर्माण प्रोपर्टिज को समझने के लिए की जाती है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न बनाना सीखेंगे
चक्रीय चतुर्भुज और अन्तःवृत्त
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटु वर्जन 1004 एलटीएस और जियोजेब्रा वर्जन 32400 का उपयोग कर रहा हूँ
संरचना बनाने के लिए हम निम्न जियोजेब्रा टूल्स का उपयोग करेंगे
कंपास सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स सर्किल विथ सेंटर थ्राउघ पॉइंट पॉलीगॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल अब जियोजेब्रा विंडो पर जाते हैं
ऐसा करने के लिए एप्लिकेशंस एड्यूकेशन और जियोजेब्रा पर क्लिक करें
मैं इस विडों का आकार बदलता हूँ
आकृति को स्पष्ट करने के लिए आप्शंस मेन्यू पर क्लिक करें फोंट साइज पर क्लिक करें और फिर 18 पॉइंट पर क्लिक करें
अब एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं
ऐसा करने के लिए टूलबार से रेग्यूलर पॉलीगॉन टूल चुनें रेग्यूलर पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करें ड्राइंग पद पर किन्हीं दो बिंदुओं पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि डिफॉल्ट वेल्यू 4 के साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है
ओक क्लिक करें
एक समचतुर्भुज एबीसीडी बन गया है
अब मूव टूल का उपयोग करके समचतुर्भुज को झुकाते हैं जो कि बायें कोने पर है
टूलबार से मूव टूल चुनें मूव टूल पर क्लिक करें
आ या ब पर माउस प्वॉइंटर रखें
मैं ब की चुनाव करूँगा
ब पर माउस प्वॉइंटर रखें और माउस के साथ इसे ड्रैग करें
हम देखते हैं कि समचतुर्भुज अब झुकाव की स्थिति में है
वृत्तखंड एबी पर एक लम्ब द्विभाजक बनाएँ
ऐसा करने के लिए टूलबार से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल चुनें
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल पर क्लिक करें
बिंदु आ पर क्लिक करें
और फिर बिंदु ब पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि लम्ब द्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है
वृत्तखंड बीसी पर दूसरा लम्ब द्विभाजक बनाएँ
ऐसा करने के लिए टूलबार से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल चुनें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल पर क्लिक करें
बिंदु ब पर क्लिक करें
और फिर बिंदु सी पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि लम्ब द्विभाजक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है
इस बिंदु को ई के रूप में चिन्हित करें
अब केंद्र ई के साथ एक वृत्त बनाएँ जो सी से होकर गुजरता है
टूल बार से सर्किल विथ सेंटर थ्राउघ पॉइंट टूल चुनें सर्किल विथ सेंटर थ्राउघ पॉइंट टूल पर क्लिक करें
केंद्र के रूप में बिंदु ई पर क्लिक करें जो बिंदु सी से होकर गुजरता है
बिंदु ई और फिर बिंदु सी पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि वृत्त चतुर्भुज के सभी शीर्षों से होकर गुजरेगा
एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है
क्या आप जानते हैं कि भुजा की लम्बाई के समान क्रम के चतुर्भुजों में से चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक होता है
अब आकृति को एनिमेट करने के लिए मूव टूल का उपयोग करें
ऐसा करने के लिए टूल बार से मूव टूल चुनें मूव टूल पर क्लिक करें आ या ब पर माउस प्वॉइंटर रखें
मैं आ चुनूँगा
माउस प्वॉइंटर आ पर रखें और एनिमेट करने के लिए इसे माउस के साथ ड्रैग करें
सत्यापित करने के लिए कि संरचना सही है
अब फाइल को सेव करें
फाइल सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल का नाम cyclic quadrilateral टाइप करूँगा
और सेव पर क्लिक करें
अब एक अन्तःवृत्त को बनाने के लिए नया जियोजेब्रा विंडो खोलें
ऐसा करने के लिए फाइल और न्यू चुनें
अब एक त्रिकोण बनाएँ ऐसा करने के लिए टूल बार से पॉलीगॉन टूल चुनें पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करें
बिंदु abसी पर क्लिक करें और त्रिकोण को पूरा करने के लिए आ पर पुनः क्लिक करें
अब इस त्रिकोण के कोणों को मापते हैं
ऐसा करने के लिए टूल बार से एंगल टूल चुनें एंगल टूल पर क्लिक करें
बिंदु baसी cbआ और acब पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि कोण मापे गए हैं
अब इन कोणों पर कोण द्विभाजक बनाएँ
टूल बार से एंगल बाइसेक्टर टूल चुनें
एंगल बाइसेक्टर टूल पर क्लिक करें
बिंदु baसी पर क्लिक करें
दूसरा कोण द्विभाजक को बनाने के लिए फिर से टूल बार से एंगल बाइसेक्टर टूल चुनें
एंगल बाइसेक्टर टूल और टूल बार पर क्लिक करें बिंदु abसी पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि दो कोण द्विभाजक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं
इसे डी के रूप में चिन्हित करें
अब एक लंबवत्त रेखा बनाएँ जो बिंदु डी और वृत्तखंड एबी से होकर गुजरती है
टूल बार से परपेंडिकुलर लाइन टूल चुनें परपेंडिकुलर लाइन टूल पर क्लिक करें बिंदु डी पर क्लिक करें और फिर वृत्तखंड एबी पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि लंबवत्त रेखा वृत्तखंड एबी को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
इस बिंदु को ई के रूप में चिन्हित करें
अब केंद्र डी के साथ एक वृत्त बनाएँ जो ई से होकर गुजरता है
टूल बार से कंपास टूल चुनें कंपास टूल पर क्लिक करें केंद्र के रूप में बिंदु डी और त्रिज्या के रूप में डीई पर क्लिक करें
डी और बिंदु ई पर क्लिक करें तथा आकृति की पूर्णता के लिए डी पर फिर से क्लिक करें
हम देखते हैं कि वृत्त त्रिकोण के सभी भागों को स्पर्श करता है
एक अन्तःवृत्त बन गया है
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने बनाना सीखा चक्रीय चतुर्भुज और जियोजेब्रा टूल्स का उपयोग करके अन्तःवृत्त
एक नियत कार्य के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप एक त्रिकोण एबीसी बनाएँ
बीसी पर बिंदु डी को चिन्हित करें एडी जोड़ें
त्रिज्या र र1 और र2 के त्रिकोण एबीसी एबीडी और सीबीडी के लिए अन्तवृत्त बनाएँ
बीई h की ऊँचाई होगी
संबंध को सत्यापित करने के लिए त्रिकोण एबीसी के शीर्षों को स्थानांतरित करें
1 2r1ह1 2r2ह 1 2rह नियत कार्य का आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ